एक बहुत बड़ी दुकान है ग्रिल लगी है।

अनानास अच्छा हैं बहुत कुछ चीज़े अच्छी हैं अ।

अच्छे फोन है है आइफोन है वन प्लस है ओप्पो है रियलमी है।

अच्छा लग रहा हैं मकान कुर्सी हैं लेबर लोग खड़े हैं।

ज़ेरॉक्स मशीन रखी हैं कुर्सी हैं अच्छी अच्छी चीज़े लगी हैं।

डिज़ाइन हैं दीवाल अच्छी हैं हर चीज़ अच्छी अच्छी हैं।

डाईनिंग टेबल रखा हुआ है खाना अच्छे से हो रहा है।

अच्छे अच्छे चीज़ हैं मौसम अच्छा लग रहा हैं अच्छा लगा रहा हर चीज़े।

कांच अच्छा है अच्छे लोग हैं अच्छा ए टी एम है।

लोग भी अच्छे हैंड्रिल मशीन हैं अच्छे लोग हैं खड़ा।

बहुत महंगी है हजार रूपये की है कार्टून खड़े हैं अच्छे लोग हैं।

कुर्सी है काउन्टर है खिड़की है दीवाल अच्छी है हर चीज अच्छी है।

वह ट्यूब लाइट भी अच्छी हैं ट्यूब लाइट अच्छी अच्छी चीज़े है।

बाहर मकैनिक की दुकान है अच्छी है।